हैलो गाइस जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मंचूरियन राइस दिखाई दे रहा है एक प्लेट दिखाई दे रही है।